रोड दिखाई दे रहा है रोड पर दो सफेद कलर की कार दिखाई दे रही है और एक लाइट का खंबा दिखाई दे रहा है।

वो बेकरी के बाहर स्टील की रेलिंगे लगी हुई है और यहाँ पर रात --

ग्राउंड है ग्राउंड में कुछ झूले नजर आ रहे है जो की हरे और लाल कलर के है जैसे की स्लाइड हुई और स्लाइड के पास में गिटी पड़ी हुई गिटी के पास में एक दो ईंटे भी दिखाई दे रही हैं।

और साइड में एक ओर सी.सी.टी.वी. कैमरे भी दिखाई दे रहे है बैंक के बाहर और यहाँ पर --

नदी के थोड़े से पास में पेड़ लगे हुए।

और यहाँ पर कही अधिक मात्रा में घास लगी हुई दिखाई दे रही है।

के जस्ट सामने बैंक है और भी कई दुकाने कई दुकानों के शटर लगे हुए है और बैंक के बहार मोटरसाइकिले खड़ी हुई है।